इसमें तस्वीर में महात्मा गांधी का फोटो है।

और दो खंभा दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है और मस्जिद में बहोत सारे खिड़की दिखाई दे रहे हैं जो कि खुला हुआ है।

यह एक रूम है जिसमें दो बोर्ड है।

और कुछ व्यक्ति नीचे खड़े होकर कुछ बात कर रहे है जो सफेद रंग का टी शर्ट पहने है।

और दूर में बहुत बड़े बड़े पेड़ का--

और बहोत सारे अगल बगल रोड पर लाइट दिखाई दे रहे है जो सफेद रंग के है।

और बहोत सारे सामान दिखाई दे रहे है जैसे तेल शैंपू कंघी--

चार चिकन लॉलीपॉप दिखाई दे रहे जो पीले रंग के है।

और कुछ पानी पीने के भी जगह दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी बैठा हुआ जो सफेद रंग का कपड़ा पेहना है।